इधर साइड में ट्रक खड़ी हुई है इधर भी ट्रक खड़ी हुई है।

जिसमें दो इमारत लगे हुए हैं।

यह तालाब की तरह दिखाई दे रहा है।

यहां पास गार्डन है और पीछे इमारत की तरह बना हुआ दिख रहा है।

इधर साइड में बैलून भी लगे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है।

इस पे प्रभु निवास लिखा हुआ है।